ओर काफी बड़े-बड़े पत्थर छोटे साइज़ के भी हैं बड़े साइज़ के और नीचे से एक चट्टान है जो काफी चपटा है जो काफी चौड़ा भी है।

बगल में मटर रखा हुआ है अब् उसके बगल में मिर्च रखा हुआ है जो मिर्च सा हरे कलर का। उसके बगल में भिंडी रखा हुआ है।

भिंडी के बगल मे प्याज़ रखा हुआ है जो लाल कलर का है। उसके एक बगल में परवल रखा हुआ है जो लाल कलर का है। उसके बगल मे लोहे का एक तराजू रखा हुआ है जो तौलने वाला है।

दुकान है। दुकान में काफी सारे फूल रखे हुए। एक लड़की है जो कपड़ा पहनी हुई है जो सूटर पहने हु उसका बाल काले कलर का --

दीवाल के किनारे तनी कुर्सी है जो सिल्वर का है। उसके बैग काट ये वो एक रखा एक बैग रखा हुआ है जो कला कलर है। उसके बगल मे एक ला पंखा लगा है जो सफेद कलर का है।

है जो भी बोरे में है। लाल कलर के बोरे में है। उसके बगल में एक मिर्ची है जो लाल कलर का है वो भी बोरे में है। उसके बगल एक तसला में मिर्ची रखी हुई है उसके बगल भ गोभी रखी हुई है।

सा ए यहां पे काफी रंग बिरंगी टी-शर्ट पहनी हुए है जो पीले कलर का लाल कलर काले कलर और सफेद कलर का है।

एक ट्रेन चल रहा है ट्रेन नीले कलर का है उसमे आई एन डी आई एन एल ए डब्लू ए वाई एस लिखा हुआ है और आगे काफी पेड़ पौधे है जो हरे भरे है पीछे एक खंभा है खंभा लोहे का है उसमे तार लगा हुआ है ।

काफी सारे गा पेड़ पौधे हैं जो हरे भरे है काफी बड़े बड़े किनारे साइड --